यहां पर गाड़ियां खड़ी हैं इसमें एक--

एक बहोत बड़ी चीज है।

पिक्चर में नजर आ रहा है यहां--

इस फोटो में नजर आ रहा है।

हमें नजर आ रहा है।